सी में स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन हम यह कुछ उदाहरणों की मदद से समझेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 जीसीसी कंपाइलर वर्जन 461 स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं
ये फंक्शन्स का समूह हैं जो स्ट्रिंग पर ऑपरेशन्स कार्यान्वित करते हैं
कई ऑपरेशन्स जैसे कि कॉपीइंग कंकेटेनेशन सर्चिंग आदि समर्थित हैं
कुछ स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन्स देखें
यहाँ हमारे पास स्ट्रांकपाई फंक्शन है
इसके लिए सिंटैक्स है strncpyचार एसटीआर1 चार एसटीआर2 एंड इंट एन यह स्ट्रिंग एसटीआर2 के पहले के एन अक्षरों को स्ट्रिंग एसटीआर1 में कॉपी करता है
उदाहरण चार strncpyचार हेलो चार वर्ल्ड 2 आउटपुट होगा वोलो यहाँ हमारे पास वो स्ट्रिंग 2 से और बाकी अक्षर स्ट्रिंग 1 से हैं
अब हम एसटीआरएनसीएमपी फंक्शन देखेंगे इसके लिए सिंटैक्स है strncmpचार एसटीआर1 चार एसटीआर2 और इंट एन यह स्ट्रिंग 1 के साथ स्ट्रिंग 2 के एन अक्षर की तुलना करेगा
उदाहरण इंट strncmpचार ईसीई चार आइसक्रीम और 2 आउटपुट 0 होगा
अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन्स का उपयोग कैसे करें
मैं आपको सामान्यतः उपयोगित कुछ स्ट्रिंग फंक्शन्स दिखाने जा रहा हूँ
मैंने एडिटर पर पहले से ही प्रोग्राम टाइप कर दिया है
मैं इसे खोलूँगा
यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन है
ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम strlenसी
इसमें हम स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करेंगे
ये हैडर फाइल्स है stdioह और stringह
यह हमारा मेन फंक्शन है
यहाँ हमारे पास एक केरेक्टर वेरिएबल अर्र है
यह वैल्यू अश्विनी संचित करता है
फिर हमारे पास एक इंटिजर वेरिएबल लेन1 है
यहाँ हम स्ट्र्लेन फंक्शन का उपयोग करके स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करेंगे
परिणाम लेन1 में संचित होगा
फिर हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की लंबाई प्रिंट करते हैं
और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम को निष्पादित करें
अपने कीबोर्ड परCtrl Alt और ट कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस strlenसी स्पेस o स्पेस एसटीआर1
एंटर दबाएँ
टाइप करें str1 एंटर दबाएँ आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है
स्ट्रिंग अश्विनी लेंग्थ 7 आप यहाँ 123456 और 7 देख सकते हैं
अन्य स्ट्रिंग फंक्शन देखें
यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग कॉपी फंकशन है
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेमstrcpyc है
इसमें हम सोर्स स्ट्रिंग को टार्गेट स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे
यहाँ हमारे पास सोर्स स्ट्रिंग में ईसीई है यह टार्गेट स्ट्रिंग में कॉपी होगा
यह हमारा स्टारसीपीवाई फंक्शन है
यहाँ हम सोर्स स्ट्रिंग और टार्गेट स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे
निष्पादित करें और देखें अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस strcpyसी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस str2एंटर दबाएँ
टाइप करें str2 एंटर दबाएँ
आउटपुट इस तरह प्रदर्शित होता है
सोर्स स्ट्रिंग ईसीई टार्गेट स्ट्रिंग ईसीई अन्य स्ट्रिंग फंक्शन देंखे
अब हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन देखेंगे
ध्यान दें कि हमारी फाइलनेमstrcmpc है
इसमें हम दो स्ट्रिंग्स की तुलना करेंगे
यहाँ हमारे पास केरेक्टर वेरिएबल्स हैं एसटीआर1 औरstr2 एसटीआर1 ईसीई के रूप में वेल्यू संचित करता है और एसटीआर2 क्रीम के रूप में वेल्यू संचित करता है
यहाँ हमारे पास आई और ज के रूप में इंटिजर वेरिएबल्स हैं
इसमें हम एसटीआरसीएमपी फंक्शन का उपयोग करके स्ट्रिंग की तुलना करेंगे
यहाँ हम एसटीआर1 की तुलना करेंगे जो है ईसीई हेलो के साथ
परिणाम आई में संचित होता है
इसमें हम स्ट्रिंग2 की तुलना करेंगे जो है क्रीम क्रीम के साथ परिणाम ज में संचित होता है
फिर हम दोनों परिणामों को प्रिंट करेंगे
और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है
प्रोग्राम को निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए टाइप करेंgcc स्पेस strcmpसी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस एसटीआर3 एंटर दबाएँ
टाइप करें str3 आउटपुट प्रदर्शित होता है 10 अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
यहाँ हमें 1 और यहाँ हमें 0 प्राप्त होता है
अपनी स्लाइड्स पर वापस आएँ
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन्स strlen strcpy strcmp strncpy और strncmp नियत कार्य के रूप में स्ट्रींग बेस्ट और स्ट्रिंग बस को श्रेणीबद्ध करने के लिए एक सी प्रोग्राम लिखें
सुझाव strcatचार एसटीआर1 चार एसटीआर2 और स्ट्रिंग लाइब्रेरी में अन्य फंक्शन्स भी देखें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें